इसमें एक आदमी खड़ा है जिसके पास दो ऑटो रि ऑटो अंकल खड़े हुई है।

इसके ऊपर द डीडिंग माफिया लिखा हुआ है।

जैसे देली चंडीगढ़ कोलकाता लुधियाना मुंबई।

इसके ऊपर प्राइड्स स्माइल्स लिखा हुआ है।

फार्मर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा--

इस दृश्य में हमें जमीन पर बहोत सारी प्लांट्स --

हमें बाहर एक कार भी पार्क की हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें एक सड़क दिखाई दे रही हैं।

जिसके ऊपर एक आदमी भी चल रहा हैं।

इस दृश्य में हमें एक ग्राउंड दिख रहा हैं।

यह दृश्य हमें किसी धार्मिक जगह का दिखाई दे रहा है।

इसमें हमें बहुत सारी स्टूडेंट्स नजर आ रही हैं।

सारे पेरेंट्स चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी हॉस्पिटल का दिखाया जा रहा है।

इसके ऊपर कुकीज लिखा हुआ है।

इस दृश्य में हमें बहोत सुंदर पारक नजर आ रहा है।

शाॅप में हमें बहोत सारा सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इसमें हमें बहोत सारे अलग अलग तरह की--

जिसके ऊपर हमें बहोत सारे खाने पीने का समान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

नीचे हमें कुछ बर्तन भी पड़े हुएं दिखाई दे रहें हैं।

इसमें हमें ऊपर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई नजर आ रही है।